ये हमारे इलाका का एक सड़क है। इस सड़क बोहोत ही साफ-सुथरा है। इस सड़क के किनारे पे ढेर सारे छोटे बड़े दुकान है।

इलका का लोग यहाँ पर ठेले लगा कर अपना भरपाई करता है ये सड़क डबल रोटेट है इस सड़क के ऊपर हर वक्त लोग अता-जाता रहता है।

यहाँ पर सब लोग एक साथ फोटो क्लिक कर रहा है। बच्चे से ले कर बड़े तक सब लोगे बोहोत ही मज़े से --

ए इलाका बहुत ही पॉपुलेटेड है यहाँ पर हर गांव का लोग गुजरता है।

छोटे बड़े बिल्डिंग से यहाँ पर स स स्टेट बैंक का एक ए.टी.एम. भी है यहाँ पर सड़क पार करने के लिए सिग्नल मेंटेन करना पड़ता है।

ऐ हमारे इलाका का एक पुराना स्तापत्य है इस स्तापत्य बहुत ही पुराना है इसलिए इस स्तापत्य के कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो चूका है इस स्तापत्य के चारों तरफ ढ़ेर सारे --

पेड़-पौधे है ए एक ऐतिहासिक स्थापत्य है इस स्थापत्य ईंटो से बनाया गया हैं इस स्थापत्य के चारो तरफ ढेर सारे बड़े-बड़े दरवाजा है।

ये हमारा इलाका के एक सड़क है इस सड़क के किनारे पे एक विद्यालय है विद्यालय बहुत ही बड़ा है इस विद्यालय का अंदर का डेकोरेशन बहुत ही सूंदर है।

इहा पर बहुत ही अच्छी से पढ़ाया जाता है ये एक उच्च विद्यालय है यहाँ पर विद्यालय के सामने लोग हर वक्त आता-जाता रहता है विद्यालय के सामने बाइक स्टैंड रहता है।

ये हमारे इलाका का एक ब्रिज है। ये ब्रिज बहुत ही लम्बा है। इस ब्रिज के निचे एक नदी है। यहाँ पर चारो तरफ का नज़ारा बोहोत ही सूंदर है। यह पर वृक्ष के बगल में --

ये हमरे इलका का एक इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है इस इंस्टीट्यूट के कैंपस बहुत ही बड़ा है इंस्टीट्यूट के चारो तरफ डेकोरेशन के काम चल रहा है।

इस सरकारी कर्मचारी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है ऐ सरकारी दफ्तर बहुत ही पुरना है इस दफ्तर के अंदर का फर्नीचर वैगरह भी बहुत ही पुरना है।

ये हमारे इलाका का एक खेत है इस इलाका का लोग खेत-खमारी कर के दिन गुजारता है इस खेत के एक साइड में एक छोटा सा ग्राउंड बनाया गया है।

ये हमारे इलाका का एक सब्जी मार्किट है ये सब्जी मार्किट एक सब्जी मार्किट है ये मार्केट बहुत ही बड़ा है यहाँ पर दूर-दूर से किसान लोग --

छोटे-छोटे ढ़ेर सारे ढाबा भी है स्टॉल है इस इलाका में हर वक्त लोगो के भीड़ लगे रहता है यह से हर वक्त कार गुजरता है।

बाइक स्कूटी पार्क रहता है यहां पर ढेर सारे छोटे छोटे दुकान भी है जहां पर फास्ट फूड वेगरा मिल जाता है।

सिर्फ बॉडी अच्छा बॉडी बनता है इस जिम सेंटर का अंदर का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है।

कुड़ी फिट दुरी से रेल लाइन है यहाँ पर रेल लाइन के ऊपर हर वक़्त ट्रैन गुजरता है यहाँ से कुछ दुरी में प्लॅटफॉम भी है।